वो टीचर्स डेज कर रही हैं| टीचर के हाथ में हैंडबैग दिखाई दे रहा है टेबल चेयर दिखाई दे रही हैं और और भी पोस्टर लगे हुए हैं।

यहाँ बहुत बड़ी डांस क्लास दिखाई दे रही है जहाँ पे बहुत सारे नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं | बहुत बड़ा सा काँच नजर आ रहा है ।

यहाँ पे फल-सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें की अलग-अलग फल-फ्रूट रखे हुए हैं अलग सब्जियां रखी हुई है डलिया रखी हुई है बॉक्स रखे हुए हैं।

कुछ में आलू दिखाई दे रहे हैं कुछ में अंगूर दिखाई दे रहे हैं पाइनएप्पल दिखाई दे रहा है तरबूज दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे केले दिखाई दे रहे हैं पत्ता-गोभी दिखाई दे रही है।

साड़ी की दुकान दिखाई दे रही है जहाँ पे की कारपेट लगा हुआ दिखाई दे रही है गद गद्दा बिछा हुआ दिखाई दे रहा है साड़ी दिख रही है बहुत सारी |

यहाँ पे बड़ी-बड़ी ईंट की दीवाल दिखाई दे रही है | कच्चा घर दिखाई दे रहा है | एक गेट दिखाई दे रहा है | पोता हुआ दो-चार लोग दिखाई दे रहे हैं | एक आदमी दिखाई दे रहे हैं जिसने की एक टोकरी अपने सर पर उठाई रखी है ।

यहाँ एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिस हर एक --